बैठे हैं और कुछ लोग खड़े नजर आ रहे है।

इस दृश्य मैं मुझे एक--

इस दृश्य में मुझे तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक खाना खाने का स्थान नजर आ रहा है।

जो कि खिलौने की दुकान लग रही--

है जिसमें की बहोत बड़े बड़े खिलौने दिखाई दे रहे हैं।

लकड़ी लकड़ी लगी हुई है इसमें दो--

इस दृश्य में मुझे लकड़ी की कुर्सियां नजर आ रही है और--

भगवान बुद्ध की तस्वीर दिखाई दे रही--

इसमें बहुत सारे फल भी दिखाई दे रहे है।